और पीछे एक पक्का मकान दिख रहा है।

ये हमें एक क्लिनिक दिख रहा है हॉस्पिटल है।

ये हमें एक गैरेज दिख रहा है जहाँ लिखा है लव ऑटो सर्विस एंड रिपेयरिंग सेंटर और वहाँ पे पाँच बाइकें बनी हुई हैं।

एक हमें पोस्ट ऑफिस दिख रहा है डाकघर जहां पे कुर्सियाँ रखी हैं स्टूल रखा हुआ है डाक का---

और ये आने-जाने का रास्ता है औ और ऊपर छत दिख रही है। जिस पे बल्ब लगे --

ये हमें फिसलगुंडी दिख रही है। तीन कलर की ब्लू कलर की हरे कलर की और पीले कलर की।